और सोफ़ा लगा हुआ है जिसमें सोफ़ा का कलर बहुत अच्छा है। रूम का कलर भी बहुत अच्छा है जिसमें एक टी.वी. लगे हुए हैं और टेबुल लगा हुआ है बगल में और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है रूम ।

ये बहुत अच्छा सैलून है जो की अंदर से बहुत ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जिसमें की बहुत कुर्सी लगे हुए हैं।

एवं सिमतला आवासीय विद्यालय और --